ये एक वॉटर पार्क का दॄश्य है जिसमे कई सारी स्लाइड्स --

उपर की दो फ्लोर है जिसपर सीलिंग लगी हुवी है वो स्टील की बनी हुवी है निचे का फर्श दिखाई दे रहा है बाउंड्री है जो की--

रेलिंग लगी हुवी है रेलिंग --

यह एक ग्राउंड है ग्राउंड के बराबर में एक सड़क--

ये एक घने जंगल का द्रश्य है जिसमे चारो तरफ मोठे मोठे--